हमे एक बाहर का फोटो बिल्डिंग का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर नीचे क साइक मे दो शटर लगे दिखाई दे रही है आस पास कुछ कांच के गेट भी ओर बिल्डिंग घर दिखाई-दिखाई दे रही है।

किसी मंजिल के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है गार्डन के अंदर का फोटो दिख रहा है इसके अंदर ऐसे कुछ गार्डन बने दखाई दे रहा है इसके अंदर पौधे में फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने के साईड में एक बीच में कुछ मंदिर जैसा बना ह इसके अंदर एक मूर्ति खड़ी दिखाई दे रही है।

किसी मन्दिर के बाहर का गेट दिखाई दे रहा है| जिस कोई दीवारो के ऊपर पोस्टर लगे दिखाई दे रहे है| सामने एक लोहे का गेट बना दिखाई दे रहा है| जिसके ऊपर बिना --

पीछे रेलिंग लगी दिखाई दे रही है। अंदर के साइड एक पीले कलर का बोर्ड लगा है जिसके ऊपर इग्लिश कुछ लिखा दिखा दे रहा है। नीचे के साइड में कुछ टायर पड़े दिखाई दे रहे हैं और नीचे कुछ ब्लॉ --